यह पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई है।

सब कुछ उगाया जाता है यहां पर भी बड़ी-बड़ी घास है।

यह स्कूल कॉलेज का वेटिंग एरिया है।

और यहां पर काफी कुछ सामान भी रखा हुआ है।

कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं बाउंड्री पे एक आदमी बैठा हुआ है।

और यहां पर ए_सी भी लगा है और सी_सी_टी_वी कैमरे की पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है।

और जगह पर पर्दे भी डले हुए है।

यह एक स्टेडियम के बाहर की पिक्चर है जहां बाहर से कार आ रही है।

बाहर एक गार्ड वाला कुर्सी पर चेयर लगाए बैठा हुआ है।

चीजें टंगी हुई हैं कुछ रेड कलर की हैं कुछ वाइट कलर की हैं।

और यहां पर मछलियों में से खून भी निकल रहा है।

फूलों से सजा हुआ है सा दोनों साइड से ज़ीने दिए गए हैं बहुत बड़ा हॉल है लाइटिंग भी बहुत अच्छी है बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है।

टेबल है कुर्सी पे बैठा हुआ है ब्लू कलर की शर्ट पहने है।

और बहुत सारी दुकानें हैं बहुत सारी सब्जियां है।

यह एक अस्पताल जैसा लग रहा है।

और साइड से जीने भी गए हैं ऊपर सूखी घास भी लगी हुई है।

उसके पास में एक पेड़ लगा हुआ है।

तालाबों के सामने साइड एक ब्रिज गया है।

जहां पर काफी लोग इकट्ठा है।

ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर की जगह है।

नीचे साइड घास लगी हुई है।

जो जालीनुमा बाउंड्री से टिके हुए है।

साइटों में लाइटें जल रही है।

पेड़ों पे हरी लाइट दिखाई दे रही है।

रोड पे कोई भी नहीं है बहुत सन्नाटा है।

ब्लू और हरी कलर की बकेट है।

यह रोड पे लगी हुई दुकान है।

यहां पर बहुत सारे तरह-तरह के झूले लगे हुए है।

जंगल जैसी जगह लग रही है।